बाहर सारे छोटे छोटे ज़ीने बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ बिल्डिंगों में लाइट जल रही हैं।

यहां पर एक गणेश ज्वेलर्स की दुकान है।

पार्क में हरे हरे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

हरे हरे पेड़ भी साइड में हैं।

बेड पे बेडशीटे बिछी हुई हैं।

ये एक ज्वेलरी की शॉप है जहा पे बहोत सारी ज्वैलरिया रखी हुई है।